सामान भी रखे हुए है यहाँ पर--

बहुत सारे लोग खड़े हुए है पेड़ भी लगी हुए है और यहाँ पर एक मंदिर भी दिख रहा है मस्जिद भी दिखाई दे--

और विंडो भी है इस स्कूल में--

और यहाँ पर दिखाई दे रहे है विंडोज --